यहा पर एक नदी है जोकि बहुत बड़ी दिख रही है और सामने एक और फुवारा दिख रहा हे जो की व्हाइट कलर का है उसके आगे पीछे बहुत सरे पेड़ लगे हुए है जोकि बोहोत बड़े-बड़े हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है जोके ग्रीन कलर का पेंट हुआ है नाईट का ये फोटो लग रहा है जोकि रात मैं निकाला गया है ।

यहां पर बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं और अलग-अलग कवालिटी के सब्जिया रखी हुई है सामने की तरफ एक टब भी दिख रहा है हम यहाँ देख रहे हैं की --

और तार भी है यहा पर जा रह है बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे तार यहाँ से निकल रहे है और यहा पर खजूर के पेड़ भी यहाँ पर दो दिख रहे है सामने और जो ग्राउड़ है उस में कही-कही पर घास भी पर थोड़ा-थोड़ा दिख रहा हैं।

यहा पे एक मंदिर टाइप का यहाँ पर दिख रहा है जिसमे अ- उप्पर की तरफ चोत्सी कर दिख रही है और अगल -बगल भि हाथी है दो जो की स्वागत के लिए खड़े रहेते है लगाए जाते है पुतले के तोर पे।